ने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी है। ब्लू कलर का पेंट पहना है। पीछे हरे भरे पेड़ पौधे हैं। ऊपर आसमान है।

यहाँ पर एक भवन नज़र आ रहा है जो कि पिंक कलर से पेंट किया गया --

यहाँ पे बोहोत सारे लोग खड़े हुए हैं। एक पुरुष है जिसने जूते पहने है और एक ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी है। उसने ऑरेंज कलर की बांधी है। उसके हाथ में एक कट्टा है व्हाइट कलर का।

यहाँ पर एक बहुमंज़िला इमारत नज़र आ रही है। उसके नीचे एक ए.टी.एम. है | ए.टी.एम. में अंदर प्रवेश करने के लिए गेट है।

जो की ब्लू कलर की है। यहाँ पर एक स्टोर है जो जहाँ पर एक कटोरा रखा है और वह कटोरे मे कुछ डाल रही है। यहाँ पर एक लैम्प भी रखा हुआ है।

यहाँ पे एक इमारत बनी हुई है जोकि खुली हुई है। चारों और से यहां पे बहुत सारे छोटे छोटे भवन बने हुए आसपास।